कॉपी किताबें ढेर सारा सामान रखा हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा है।

यह एक शोरूम है शोरूम के बाहर रोड पर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

और गाड़ी पर दो व्यक्ति सवार हैं।

गाड़ियां ढ़ेर सारी खड़ी हुई हैं अउरी बहुत प्यारी लग रही है।

जिसमें से तीन व्यक्ति एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं और--

यह एक बहुत अच्छा कमरा है।

यह एक योगा करने का स्थान है।

यहां पर ढेर सारे गद्दे पड़े हुए हैं।

और पीछे सरसों खड़ी हुई है जिसके ऊपर पीले कलर के फूल आ रखे हैं।

यहां पर दो बेकरी वाले भी बैठे हुए है।

और व्यक्ति ने लाल रंग की टी शर्ट पेहनी हुई है।

यह एक बहुत अच्छा मंदिर है।

और नीचे बहुत अच्छा फर्श है।

उस साइड में दो कुर्सियां भी रखी हुई है।

आसपास ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं जिनमें से कुछ--

खाने की व कुछ खिलौनों की दुकान है।

और ढेर सारे बच्चे व महिलाएं यहां पर घूमने के लिए आए हैं एक व्यक्ति बाइक पर सवार है।

यह बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं।

यह एक बहुत सुंदर बैड पर डॉगी लेटा हुआ है।

और दो डॉक्टर इसके पास इसकी जांच कर रहे हैं।

यह एक मुर्गे फारम की दुकान है।

मुर्गे ऊपर व नीचे दो ढेर सारी पेटी में रखे हुए हैं।

और यहां हरे भरे पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं।

इनमें से कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष है जो अपने हाथ में सामान ले रहे हैं।

और टेबल के ऊपर जग में पानी रखा हुआ है।

और दीवारों पर सफेद व लाल कलर के गुभ्भारे लगे हुए है।

यहां पर तालाब में पानी इकट्ठा हो रखा है।

और इसके चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

अपनी बाइक में व अपने वहानों में तेल डलवाने के लिए आ रहे--

राखी बहुत सुंदर यहां पर रखी हुई है।

यह राखियां बहुत ही अच्छी लग रही है।

और दो ट्रक यहां पर खड़े हुए हैं जिनके अंदर माल सप्लाई हो रहा है।

बाहर से लोग इन्हें देखने के लिए आ रखे हैं।

कमरा है। यहां पर खाने की चीजें ढ़की हुई बर्तनों में रखी हुई है।

इनमें से कुछ गुलाबी कलर की और कुछ बैंगनी कलर की है।